यह मैदान है और इसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो दौड़ रहा है और उसके किनारे-किनारे--

यहाँ एक पक्का घर है और ईसमें डिज़ाइन किया गया मस्त फूल दिखाई दे रहा है साथ में अलग प्रकार के डिज़ाइन किये गए है।

यहाँ दो ऑटो दिखाई दे रहा है। और एक व्यक्ति--

यहाँ ऑटो दिखाई दे रहा है। और साथ में एक स्कॉर्पियो भी है और यहाँ पर कम से कम दो-तीन बच्चे और दो-तीन महिला दिखाई दे रहा है और साथ में दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहें है।

पत्थर है। हम्म यहाँ पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहें है। और एक व्यक्ति उस पत्थर के नीचे घुस रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है। और एक व्यक्ति मोबाइल फ़ोन लेकर वीडियो बना रहा है।

कंप्यूटर सेन्टर आपका हार्दिक स्वागत करता है। कंप्यूटर लैब ऑफिस भी लिखाया हुआ है साथ में मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है।

यह मैदान है और इसमें कुछ फंक्शन चर रहा है और उसके किनारे-किनारे-- .